यह किला का द्वार बहोत बड़ा है जो कि पत्थर से बनाया गया था और यह अभी बंद पड़ा हुआ है।

यहाँ पर बहोत ही प्राचीन समय के अस्त्र-शस्त्र रखे हुए हैं जो कि यहाँ लोगों के --

यह एक बहुत बड़ी व्यायाम शाला है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्यायाम मशीने रखी हुई है।

यह एक लक्ष्मी किराना एंड जेनरल स्टोर है यह एक मेन रोड पर स्थित है यह दुकान में सभी प्रकार के किराने के समान मिलते हैं।

और यहाँ टेबल भी लगाई गई है ये रेस्टोरेंट मे सभी तरह के फूड्स उपलब्ध है।